और यह यहां पर किसी की शादी समारोह है।

यह एक बड़ा स्विमिंग पूल है इसमें--

और कुछ इशारा कर रहा है और कुछ--

अनेको आदमी बैठे हुए है कुछ कुर्सी पर बैठे हुए है कुछ अंदर--

और दीवार पर एक दीवार घड़ी लगी हुई है और उसके नीचे एक कैलेंडर लगा हुआ है और एक साइड में दीवार पर एक पंखा लगा हुआ है।

कुर्सियों पर बैठे हुए हैं उसमें लड़कियां और लड़के हैं जो अपने सिर पर--

इसमें बहुत सारी गाड़ी खड़ी हुई हैं।

पेड़ ही पेड़ लगे हुए हैं और नीचे इसके अंदर दो बाइक खड़ी हुई हैं और इसका फर्स सफेद है।

इसके आगे एक गाड़ी खड़ी हुई है।